और या है और टेंट भी--

यहां चूबारा बना हुआ है।

कॉलेज दिखाई दे रहा है यहां बच्चे पेपर दे रहे हैं।

और गाड़ियां भी दो गाड़ियां भी खड़ी है और यहां--

ले रही हैं बड़ी सुंदर सुंदर डिजाइन है दी--

बहोत बड़े दिल्ली से नज़र आ रही है।

बैठे हैं और एक आदमी खड़ा है और सब ट्यूशन पढ़ रहे हैं।